मुझे यहाँ पर बहुत पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर खम्बे दिखाई दे रहे है क्वालें दिखाई दे रही है बदल भी दिखाई दे रहे --